ए पार्क है पार्क में मगरमच्छ कछुओं पंछी बिहार काला हिरण नीलगाय--

पोस्ट बॉक्स कहते है।

यृ एक बहुत ही खुला आसमान है खुला आसमान के नीचे छोटे-छोटे घर दिखाई दे रहा है बिल्डिंग और पहाड़ के पहाड़ में बहोत ही पेड़-पौधा है बड़ा-बड़ा पत्थर भी है।

जहाँ पर बस स्टैंड से उतरकर उस ए के--

एक फोर व्हीलर है एक दुकान के सामने जहाँ पर दो लड़के खड़े है।

और डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है खाली टेबल के ऊपर टिशु पेपर और ग्लास भी रखा हुआ है ।

यहाँ एक दुकान है जहाँ पर सब सामान इधर-उधर रखा हुआ है।